शॉप के अंदर बहुत सारे बड़े-बड़े टायर रखे हुए हैं।

फर्श पर नीले कलर का मैट है।

खड़ी हैं और आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है।

प्लांट्स फॉर सेल लिखा है यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई--

हाजीपुर लिखा हुआ है कॉलेज की दीवार पर बहुत सारे पेपर --

जिसमें घास लगी है और पास में एक घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

घर में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं।

और एक ब्लू कलर का टेबल है जिस पर वाटर कूलर रखा हुआ है।

शॉप के बाहर कांच का एक दरवाजा लगा है।

बुलेट रेड और ब्लैक कलर की है।

शॉप हैं जिसकी दीवारों पर डॉग्स की पोस्टर लगे हैं।

इसको पर्दों से डेकोरेट किया हुआ है।

सैलून का बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर फ्रेंड्स ब्यूटी ब्लूम लिखा है।